बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाया जाता है एग्जाम के लिए और बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते है। क्लास जोइन करे और --

चर्च क्रिस्चियन हम मतलब ये भी एक धर्म है जो कि बहोत अच्छे लोग रहते है। अच्छे से अपना धर्म को निबाहते है। इन लोगो का व्यवहार भी काफी अच्छा होता है। सब का धर्म अलग-अलग है। सब अपने धर्म के लिए जीते हैं।

बहुत ही काम है लोग जाते हैं पैसे निकालने और भी बहुत सारे काम है आप यहां से ए_टी_एम का अप्लाई भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं अपना बैंक पासबुक प्रिंट करा सकते हैं पैसे जमा कर सकते हैं बैंक से लोग पैसे जमा करते हैं निकालते हैं।

ये लकड़ी की बनी हुई होती है। इसका उपयोग किया जाता है लोगों को इस पार से उस पार ले जाने के लिए लोग इस में इस पार से उस पार जा सकते हैं। नांव लकड़ी का बना होता है। .

ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने काफी आनंद आता है यहाँ पे घुमने में लोग भारी से भारी मात्रा में जाते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं तो आप भी जाइये एन्जॉय कीजिए। बहुत --